यह एक बहुत अच्छा बैंकट हॉल है।

बहुत अच्छा डेकोरेशन लगा है।

और ऊपर छत पर लाइट भी लगी हुई है।

यह एक मकान की बहोत अच्छी छत है।

इसके बराबर में ए_टी_एम भी लगा हुआ है।

बॉक्स रखे हैं इनके अंदर भी बहोत सा समान है।

और इसके आस पास लाइट जली हुई है।

यह एक बहोत अच्छा होटल है।

यहां पर कुछ महिलाएं कुछ पुरुष फूलों को तोड़कर अपनी टोकरी में रख रहे हैं।

यहां पर कुछ शेटरिंग की बल्लियां खड़ी हुई हैं।

और यहां पर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर प्लाई लगी हुई हे।

यह एक बहुत अच्छा शोरूम है इस शोरूम में हर प्रकार के एक लाइट लगी हुई है।

यहां पर बहोत अच्छा एक कमरा है। इस कमरे में दो टेबल रखी हुई हैं।

यह एक बहुत पुराना किला है।

यहां पर बहुत अच्छी एक कपड़े की दुकान है।

और साइड में एक गेट लगा हुआ है।